और परछाई पड़ रही है किसी चीज की।

और दो द दराज है इसमें सामान रखते हैं सोफे के सोफा है उसके नीचे एक लोहे का कुछ पड़ा हुआ है।

कुछ आदमी इस पे छतरी रखे बैठे है एक बोट चल रही है उसने बहुत सारे आदमी है।

रोड पे बहुत सारा कचरा पड़ा है सामने एक पेड़ है बिजली के तार है एक दुकान लगी हुई ठेले --

इसमें एक मजदूर काम कर रहा है सामने बहुत सारे ईटें रखी हुई है बिल्डिंग है बिल्डिंगो पे नीले कलर की नेट डली है सामने पेड़ लगे हैं।

रखी हैं अंदर टॉफी की दुकान है | एक सामने स्टूल रखा है | ऊपर टीने हैं | सामने शटर लगा है बगल में पेड़ें हैं | उसके ऊपर एक छोटी सी बिल्डिंग दिख रही है।

सामने एक छोटा सा और मंदिर है जिसमें दो इंसान हैं जो एक बाल बाँधे है एक टोपी लगे हैं जिसके एक पगड़ी बँधी है।

एक टंकी रखी है | अंदर कांच है हैं तीन चार पिले कलर से पूता हुआ है।

सामने पाइप लाइन के लिए टपरियाँ लगी है ए --